मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है और इस पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

दो आदमी है हार एक ब्लू कलर टी शर्ट पहना हुआ आदमी बैठा हुआ है।

और इसमें कुछ पाइप्स ब्लू और ग्रीन में रखी हुई है एक व्हाइट कलर का बड़ा सा बम्बा रखा हुआ--

यह एक मोबाइल कल मोबाइल की शॉप है जोकि एक छोटा सा व्हाइट कलर का डब्बा है।

इस पिक्चर में तीन बहोत बड़े पेड़ हैं एक बड़ा सा घर है तीन आदमी हैं।

और इसपे लिखा हुआ है प्राइम योटोमोटिव और इसके सामने दो कार हैं जो कि एक वाइट कलर की है और एक रेड कलर की है।

इसके साइड में बाइक भी है और इसके पीछे दो पेड़--

यह एक केबिन है इसमें दो चेयर हैं और एक बड़ा सा टेबल है।

और कुछ बुक्स रखे हुए हैं और एक पेन का डब्बा है।

सामने लोहे का गेट लगा हुआ है जो की अभी बंद है ये मंदिर रेड कलर की है।

पीछे टॉवर लगा हुआ है। हरे हरे झाड़ियां हैं छोटे छोटे बड़े बड़े।

यह पिक्चर किसी घर के बाहर से लिया गया है जो की--

इसके अंदर एक पेड़ लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए है।

कि और इस इसमें दो लाइट्स दिख रही हैं और अअ एक यू मैन जाता हुए दिखाई दे रहा है। और--

लिखा है सुधा पारलोर और कुछ इसमें वूमेंस खड़े हुए हैं जो कि--

सामान ले रहे हैं और इधर के साइड में एक छोटा सा अं घर टाइप का है जिसपे लिखा है सीधा और के पास एक रेड कलर की बाल्टी रखी है और --

और इसमें एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है एक थैला लिया है।

सूट है और लहंगे हैं और अ अलमीरा है जो कि उसमें सारे कपड़े रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि आर्ट की केबिन है।

इसमें बहता हुआ पानी है और भी छोटे छोटे पत्थर है।

इस पिक्चर में किसी घर के बाहर का दिखाया गया है जोकि कांच के गेट्स लगे हुए हैं ।

ये कई जगह जगह पे पेड़ भी लगे हुए हैं और दो ये दो फ्लोर का है।

इसके इसमें नीचे के साइड में पूरा पानी गिरा हुआ है।